चट्टानें दिखाई गयी है जिन्हे अलग-अलग रंगो से रंगा गया है जैसे।

सफेद रंग का पट भी दिखाया जा रहा है जिसके साथ एक लाल रंग की कुर्सी भी दिखाई जा रही है।

पुरुष है तथा दो महिलाए हैं तथा --